ये देखने से मुझे यहाँ पे कोई डांस हो रहा होगा शायद राधा रानी या कृष्ण कन्हैया का डांस हो रहा होगा।

ये तस्वीर को जो कि ख़ास जंगलो के लिए लिया गया होगा।

उपर में सीडियां भी नजर आ रही है सीड़ियों से उपर जाने के बाद केंद्र मिनिस्टर से आप लोग मिल सकते है जो अभी यहाँ का होगा।

यह देखने से मुझे कोई पत्थरों के बीच का यहाँ पे कोई पानी भरा हुआ है पत्थरों के बीच--